यह एक हॉल जैसा दिख रहा है और यहां पर ऑफिस के जैसा डेकोरेशन किया गया है।

यहां पर सोफा लगा हुआ है जहां पर की लोग बैठे हैं और।

एवं एक बड़े के वृक्ष दिख रहे हैं यहां पर ई इसमें पत्ते झड़ गए हैं और साथ में--

बेंच एवं टेबल लगे हुए हैं।

कुछ लड़के बैठे हुए हैं और साथ ही काउंटर पर एक महिलाएं दिख रहे--